इस चित्र मे आपको एक काला सा बैनर बड़ा वाला दिखाई दे रहा होगा।

और एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है और नीला आसमान भी --

इस चित्र मे हम देख सकते है कि अ अ बहुत सुंदर आसमान हो रखा है पेड़ दिखाई दे रहे है बहुत सारे बैनर्स भी लगाए हुए है।

स्ट्रीट लाइट लगाये हुए है और एक खाली सड़क दिखाई दे रही है जिसमे दो गाड़ियाँ खड़े हुए बहुत से हरियाली एवं पेड़ पौधे--

इस चित्र मे हम देख सकते है की एक क काली कार खड़ी हुई है और सफेद आसमान हो रखा है।

इस चित्र में हम देख सकते है कि बोहोत से रंग- बिरंगे टी-शर्टस दिखाई दे रहे होगें और बहुत --

--ये है और जमीन पर नीले कलर का चादर भी बिछाया हुआ है।

इस चित्र मे हम देख सकते है की हर जगह हरियाली दिखाई दे रही है और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

और एक खाली सड़क जिसमे गाड़ियां खड़ी है और बहुत से पोस्टर्स लगाये हुए हैं।

और बैनर भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है एक स्ट्रीट लाइट --

बस दिखाई दे रहे है और बहुत से लोग इन बस पर चढ़ रहे है।